ये दो मंजिल है इसमें रेड कलर है ब्‍लू कलर है।

और ये व्‍हाईट कलर का है।

ये एक मंदिर है बहुत अच्‍छा है व्‍हाईट कलर का उसमें थोड़ा - थोड़ा ब्‍लू कलर भी है।

इस टेंट पर एक ग्रीन कलर की जाली लगी हुई है साईड में घर है जिसपर खिड़कियां हैं।

एक इंसान है जो व्‍हाईट कलर की शर्ट पहना --

रखा हुआ है टेंट लगा है जिसमें येलो और ब्‍लू कलर है।

यहां पे झांझरे लगी हुई हैसाईड में पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां बहुत सारे कपड़े है ब्‍लू कलर --